जिम मे दो चार आदमी है इसने जूते पहने हुए है यहा पे जो ये टायर लगे हुए है गुलाबी कलर के हरे कलर के काली-काली मशीने है लाल कलर का इसका दीवाल है जहा एक ए.सी. --

यह दुकान है एक आदमी बैठ हुआ है इसमे फोनपे का क्यू .आर.कोड भी है बहुत सारे चिप्स बिस्किट क्रीम मिठाईया टॉफी --

पंखे सीमेंटेड जगह पे रखे हुए है नीचे धुल मिटटी भी है पीछे दो साइकिले है एक स्कूटी रखी है एक बाइक भी है और वहा--

जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है एक कांच में फ्रेम है ये इस लकड़ी को जो शेप किया है बहुत ही चिकना है ये इसमे काला -काला सा भी कुछ --

तेजा बुकस स्टॉल किताबो की दुकान यहाँ पे बहुत से पोस्टर लगे हुए है बहुत सी किताबे लगी हुई है एक औरत है जो अंदर किताब के पास बेठी हुई है एक आदमी बाहर काउन्टर पर खड़ा है।

चश्मा भी लगाई है टी शर्ट पहनी है और हाथ उठाए हुए हैं बगल में और भी नाव है ऊपर खुला आसमान है बगल मैं एक औरत खड़ी है सफेद चूड़ी पहने हुए हाथ में उसके।